पेट्रोल पंप के जहां पे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पे एक एक्टिवा भी है और एक बाइक पे एक भाई साहब बैठे हुए जो पेट्रोल पुरा रहे।

और यहां पे एक बहन जी ने साड़ी भी पहनी है और एक भाई साहब के हाथों में एक रेड कलर की थैली भी है।

और यहां पे एक भाई साहब लाइटिंग --